साथ ही एक और पटरी हमें देखने को मिल रही है और उसके साथ में एक और पटरी पे चलती हुई ट्रेन मालगाड़ी देखने को मिल रही है और वहाँ पर बिजली के खंभे भी लगे हुए है जोकि ट्रेन को बिजली प्रोवाइड कराते है और हम देख सकते है कि यहाँ पे पूरा एक प्लेटफार्म बना हुआ है लाइट राइट एंड साइड में जहाँ पे बेंचेज भी है सीमेंट --

देख सकते है कि यहाँ पर काफी सारा पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है जो कि एक नदी यहाँ से जा रही है और यहाँ पर पानी में लहरे भी हमें देखने को मिल रही है।

देख सकते कि यहाँ पे काफी सारे फ्रूट वगैरा पड़े हुए हैं जैसे की लाल रंग का अनार हमे देखने को मिल रहे हैं और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे काले-काले अंगूर भी रखे हुए हैं और यहाँ पे बनानास भी हम--